मतलब यह फील्ड है बड़ा --

यहाँ पर बहुत बरा - बरा रैक बना हुआ है यहाँ पर एक --

पंचर अंचर सब बनवाते हैं सौरभ जैसा आदमी भी पंचर वही पे बनाता है।

दोस्त यह हमारा स्कूल है आज हमारे स्कूल में फंक्शन चलेगा।

अपनी पत्नी के लिए माँ के लिए बहिन के लिए अपने लिए --

इसी को नाम है भारत पेट्रोलियम हेलो देख जा सकते हैं।

यहीं से क्लास कीजिए और बूढ़े और बच्चे सभी को पढ़ा के जवान बनाइए।

ये एक बाउंड्री है इसका--

यहां पर खाते हैं स्टाफ सब और जाकर रह भी सकते हैं एक--

जिसका कोई उपाय नहीं है खा नहीं पस --

यह घर बहुत अच्छा है यह देखिए लोग ग्राउंड में हैं वॉलीबॉल के--

गिफ्ट लेने के लिए जरूर इस दुकान को संपर्क करें आइए और लेकर जाइए गिफ्ट ।

इस इस्कूल का वह बहुत अच्छे से ध्यान रख ख्याल रखते हैं।

यहाँ पर आगे निकलने के लिए देखिए कितना कहीं से कोई भी चला जा रहा है इसी कारण जाम और बढ़ते जा रहा है।

यहां पे उसका बहुत बड़ा घर लग रहा है यहां पर पेड़ वगैरह बहुत हैं इसलिए इस घर का लुक बहुत अच्छा है।

यहाँ पर तरह तरह के मरीज को देखा जा रहा है।

यूज कर सकते हैं दूर जाने के लिए नजदीक जाने के लिए--